एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है जो की शर्ट पहने हुए है और पैंट पहने हुए है और उसके पीछे जस्ट एक पोस्टर भी खींचा हुआ है।

हलो । ये एक व्यक्ति यहां पर खड़े हैं जो कि ब्लू कलर का ड्रेस में है और उनके मु पे मास्क लगा हुआ है ।

सब पूरा ग्राउंड नज़र आ रहा है जो की फील्ड जैसा दिख रहा है चारो तरफ से बाउंड्री करके घेरा हुआ है।

और एक दुल्हन है जिसके घूंघट मे घुंघरू है काफी अच्छी ड्रेस है बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रेस ।